जहां बहुत सारा टेम्पो लगा हुआ है टेंपू हमारे जीवन मे उतना बड़ा महत्वपूर्ण जगह प्राप्त कर लिया है जैसे मानिये की कही जाना आना हो तो सबसे पहले टेंपू का ख्याल आता है क्योंकि उसका भाड़ा तनि कम रहता है ओकर बाद जल्दी-जल्दी पंहुचाता भी क्युकी कम सवारी बैठता है जल्दी से पंहुचाता भी है।

यह जो दृश्य देख रहे है जो आदमी खरा है पहनके ओ कर पीछे जो है कहीं का प्राचीन मंदिर है ।

ई जो लड़का है लगता है बीयाह मे लगता है आया है और अलगे ही पोज बनेएले है।

और इसी एकर नाम विशाखा डेयरी पार्लर है जो शायद बिहार में --